और हम आगे देखेंगे की कुछ उम्म पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा एक सड़क पे |

इमेजेज में हम देख रहे हैं कि खूब झना घना-सा जंगल है जहां पे ग्रीन हरे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं| ऊपर से देखेंगे कुछ आसमान की छवि नजर आ रही है।

इसमें हम देख रहे सायद इसपे स्कुल या तो कोलेज वगेरा है जहा पे हम देख रहे है की स्कुट है खुच उपर की तरफ आसमान भी नज़र आ रहा है नीचे हम देखंगे की एक आदमी बलून वगेरा लेके जा रहा है।

जैसा हम देख रहे हैं हमें ऊपर की तरफ आसमान नज़र आ रहा है और शायद कुछ मस्जिद बनी हुई है जस्ट सामने।

--और दो गाये बंधी हुईं हैं शायद कोई भैंस है बफैलो बफैलो बंधी हुई है एक मोटी और एक छोटी दो उसके आगे कुछ घास भी पड़ा हुआ है खाने का चारा और हम देख रहे की इसका घर है ये शायद --